बाहर की तरफ एक गेट है जिसमें नीले रंग का शीशा लगा हुआ है।

ऊपर एक दीवार उठ रही है जो कि अभी उठी नहीं--

यह एक होटल का फोटो है जिसके अंदर दो तरह के खाने रखे हुए हैं।

यह एक स्कूल का फोटो है जिसके अंदर तीन बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं।

नीचे एक हरा पौधा लगा हुआ है।